एक बड़ा-सा जो है हॉल दिखाई दे रहा है यहां पे काफी सारे सोफाज नजर आ रहे है बीच मे टेबल रखा हुआ है और यहाँ पर काफी अच्छे तरह से एक ग्रास की वो डिजाइन की गयी है।

इलेक्ट्रिक पोल्स इलेक्ट्रिक वियर्स दिखाई दे रहे है जो ट्रेन के वियर्स होती है वो नजर आ रही है आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

और एक सड़क दिख रही है और वहां पर कुछ दुकानें दिख रही है काफी ज्यादा बसेज़ वहां पर नजर आ रही है जो नीले रंग की और पीले रंग की है कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं जो सीमेंट कलर की दिख रही है कुछ जो है वो सफेद रंग की दिख रही है।

यहाँ पर यह एक बैंक दिख रहा है और बैंक के जो कर्मचारी है उनके कस्टमर को बता रहे है और उनके हाथ मे पेन है और फ़ाइल दिख रही है वही पर टेलिफोन नजर आ रहा है कम्प्यूटर दिख रहा है।